यहां पर ये एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस तस्वीर में दिखा रखा है यहां पे एक ट्रक नजर आ रहा है जो कि--

यहां पेट्रोल यानि मिलने चहिए--

इसमें दिखाया गया है कि यहां पे कुछ लोग बैठकर--

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहाँ पे एक ट्रक नजर आ रहा है जिसमें--

छ में दिखाया गया है कि यहां पे एक अं दरवाजा भी दिख रहा है जो कि अभी उसपे ताला लगा हुआ है।

जैसे की पेड़ दिखाई दे रहा है जोकी हरे रंग के हैं यहाँ पे दिखाया गया है की ये एक--

और कुछ यहां पे पूजा कर रहे है।

यहा पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहां पर कुछ लोग काम करे है।

पीछे टेंट वगैराह लगा रखा है पूरा डेकोरेट किया गया है एक--

यह कुछ सोफे भी एक डिजाइन में रखे रखे गए हैं कुछ व्यक्ति खाना खा रहे हैं आसपास घूम रहे--

यह एड होती है इसमें दिखाया गया है यहां--

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक--

कुछ पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया यहां पे एक डांस शो चल रहा है जिसमें दिखाया गया है कि यहां पर--

इस तस्वीर में दिखा रखा है यहां पे कुछ डांस चल रहा है एक--

रिकॉर्डिंग वगेरा भी होती है साइड में पेड़ पौधे हरे भरे घास पूस भी उगे हुए है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक क्लीनिक है।

इसमें इसका क्लीनिक का नाम भी दे रखा है।

जिसमें अलग अलग चीजें मिलती--

इस पिक्चर में दिखाया गया यहां पे ऊपर लाइट जल रहा है यह पुराने जमाने का कुछ--

इसमें बहुत सारी गाड़ियां पहले से भी आए हुए खड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक--